इस तस्वीर में मुझे एक शादी की सजावट दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे दो ड्रम दिख रहे हैं।

चार प्लेटें दिख रही हैं उसके पास एक पानी की बॉटल भी रखी हुई हैं।

अंदर एक इंसान भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक क्लास की फोटो दिख रही है।

उसके पास आस-पास बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं।

होटल कि दुकान दिख रही है जिसमें लोग बैठे हुए है आगे चार लोग बैठे हुए है।

जिसके आसपास एक पेड़ भी दिख रहे हैं पत्थरो के पास से एक पानी की लहर जा--

इस तस्वीर में मुझे दो इंसान खड़े हुए दिख रहा है।

जिसमें एक लड़का खड़ा हुआ है और उसके पास--

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारी भगवान की मूर्तियां दिख रही--